और कुछ बाइक और स्कूटी पर कुछ लोग दिखाई दे रहे है और कुछ दुकाने दिखाई दे रही है जहा पे कुछ लोग खडे हुए है।

एक बड़ी सी सफ़ेद कलर की बिल्डिंग दिख रही है। उस बिल्डिंग मे दो तार के खंबे लगे हुए है।

और चारों तरफ हरे भरे छोटे बड़े पौधे है इन पौधों के बीच से एक सड़क जा रही।

और पेट्रोल पंप की छत के नीचे दो कार अ रखी हुई है और एक व्यक्ति बाइक पर है और एक व्यक्ति उससे दुर खड़ा हुआ है।